बाइक खड़ी है और बहोत से बाहन निकाल कर जा रहें--

पूरा रेट पड़ता है जहां पर येलो लाइट लगी है और जो कि इसके सामने एक और पर्दा डाला हुआ है जो वाइट और लाइट --

ब्लू कलर का एक बड़ा पोस्टर लगा है औ नीचे की तरफ व्हाइट ब्लू ग्रीन बहोत से पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां पर एक मंदिर है जिसमे भगवान की मूर्ति लगी हुई है एक ब्राउन कलर के भगवान ने कपड़े पहने है।

और सामने इसमें एक लोहे का गेट लगा हुआ है जो अभी बंद है जो जाली का है सामने एक खिड़की जो कांच की है अभी बंद है।

आगे खेत है खेत में फसल लगी है बहुत ही सुंदर हरियाली है।

यहां पर एक स्टेज बना हुआ है पीछे की तरफ ग्रीन पर्दे लगे हैं।

मुझे बहोत ही सुंदर लग रहे हैं और इस पार्क में कुछ लो कोई लोग खड़े हुए है।

और बहुत जो व्हाइट रूम है इसमें दीवारों पर भी कुछ सामान टंगा है और यहां जो पर्दे लगे हैं वो पॉलीथिन के साइड से एक रोड जा रहा है।

यहां पर एक नदी है और नदी के कीनारों पर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और इन पत्थरों के आस पास बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

हो रहा है। बोहोत ही सुंदर मौसम लग रहा है नदी के आसपास।

जहां सामने एक क्लब बना हुआ है जो पूरी बिल्डिंग है वो लाइट --

और बहोत सारे पुराने लोहे के रिंग्स भी यहां पर रखे हुए हैं दूसरा बहोत सारा सामान है कुछ छोटे छोटे लोहे के सरिए इंस्ट्रूमेंट भी यहां है।

और सामने भारतीय स्टेट बैंक का छोटा पोस्टर भी है और बड़ा एक पोस्टर भी है जो--